एक क्रियाना स्टोर है जहां--

तो जैसा कि आप देख--

ये है गुरुकुल ग्लोबल स्कूल --

जैसा कि आप देख--

एक बिल्डिंग है जो कि बहुत बड़ी--